के बाइक को रिपेयर किया जाता है। अपाची हेवी ड्यूटी मन जितना भी टीवीएस का बाइक होता है।

यहां हर चीज के आपको स्कूल से रिलेटेड हर चीज जहां मिलेगा आप लोगों को।

ये एक सैलून है जहां लड़कों का बाल काटा जाता है और दाढ़ी बनाया जाता है।

ये चाय म्युजियम में बोहोत ही अच्छा रहता --

यहाँ एक मेला लगा है जहाँ लोग घूमने आते हैं और मेले का मज़ा लेने आ --